ये कांच है यहाँ बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं गेट जो है लोहा का गेट है।

एंड एक लड़का बैठा हो दो लड़का बैठे ब्लू रंग का टी शर्ट पहने ग्रीन रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

यह बहुत बड़ा नदी है जिसने पहाड़ों के बीच आया हुवा है बहोत से पत्थर है से पेड़ पौधे हैं।

लेफ्ट साइड में बहुत सारी तार है और बहुत सारे सारे गा--

इसमें बहुत सारी खिड़कि हैं खिड़किया जो शीशे के नीचे--

एंड आगे बहुत बड़ा यह कॉलेज की तरह है।

हाय गवर्नमेंट का बस है गवर्नमेंट लिखा हुआ है येलो कलर का एक फ्लैग बना हुआ है येलो कलर का--

व्हाइट कलर शर्ट पहना ब्लैक पैंट नीचे पहना हुआ घड़ी हाथ में लेफ्ट साइड में आगे की ओर एक और बस है।